घर का आगे घास वाला मैदान है।

एक कच्चा रस्ता भी दिख रहा है।

ये बेम्बू से बना हुआ घर भी दिख रहा है।

एक फोटो में खुला आसमान भी दिख रहा है।

नदी पे एक लकड़ी का बोट भी दिख रहा है।

औरत और आदमी लोग हैं टेंट का साइड में एक--

ये फोटो में बहुत सारा पहाड़ दिख रहा है।

शेल्व्स में बहुत सारा किताब रखा हुआ है।

रास्ता का साइड में लैंप पोस्ट भी दिख रहा है।

स्टेज पे दो औरत और दो आदमी दिख रहा है।

घर का ऊपर चार वर्कर लोग काम कर रहा है।

यह फोटो में बहुत सारा घर दिख रहा है।

ये फोटो में एक घर दिख रहा है।

घर का कलर सफेद है।

खिरकी पे सफेद कलर का पर्दा भी लगा हुआ है।

रूम का ऊपर दो पोट लटकाया हुआ है।

दुकान का अंदर एक आदमी भी दिख रहा है।

ऊपर में बहोत सारा डिजाइन बना हुआ है।